यह एक रोड का दृश्य है रोड के बगल में गाय चरता हुआ नजर आ रहा है।

और यहां पे नेट बनाया गया है और यहां बहुत सारे पेड़ पौधा भी है।

और यहां पे फूल बहुत सारा दिखाई दे रहा है और फूल गुलाबी कलर का है।

और पीला कलर का भी है और यहां पे इसका पत्ता हरा हरा दिखाई दे रहा है और जमीन में घास भी है।

एस_बी_आई का पोस्टर लगाया गया है और यहां पर आदमीन भी दिखाई दे रहे हैं और बाहर में गाड़ी है और पेड़ भी है।

रूम में बेड बिछाया गया है और बेड में कभर भी लगाया गया है और रूम के बाहर बहुत सारे डिब्बा रखा गया है।

और कैंची भी रखा गया है और काउंटर में बोर्ड भी लगाया गया है।

यहां पर बहुत सारा आदमीन दिखाई दे रहे हैं और यहां पे मूर्ति रखा गया है।

मूर्ति में बहुत सारा फूल लगाया गया है और इसको सजावट किया गया है।

कपड़ा लाल रंग का है और यहां पे कुर्सी भी रखा गया है और टेबुल भी रखा गया है।

और यहां पे पटरी भी बनाया गया है और पटरी में झरी भी दिखाई दे रहा है।

यह एक रूम है रूम का दीवार सफेद है और रूम में स्टेज बनाया गया है।

और यहाँ पर पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है और घास भी दिखाई दे रहा है।

यह एक बहुत बड़ा डैम है डैम में बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है।

रूम में टाइल्स भी लगाया गया है और रूम में बहुत सारा टेबल रखा गया है।